जिसके अंदर कई सारा बुरिया रखा हुआ है जी --

इसमें चावल की बोरी मैदा की बोरि और रैक रखा हुआ है जिसमें रैक में मैगी चवनप्राश और विटामिन की कई चीजे रखे हुए हैं.

गैराज के ऊपर कैरियर दिख रहा --

और के पीछे डिक्की खुला हुआ है डिक्की के पीछे सिलेंडर --

इसके ऊपर कुरकुरे का चिप्स का टांगा --

यह एक ऊपर से गिरता हुआ पानी का नहर जैसा नदी है.

टेबल के साइड साइड में कुर्सियां और सोफे भी लगाए हुए.

इसके अंदर ऐ_सी सेलून ऐ_सी सेलून लिखा हुआ हे.

यह एक्सिस बैंक का ए_टी_एम जिस--

यह एक जनरल स्टोर का इमेज हे.

यहां एक हवाई अड्डा है जिस--

गाड़ी के साइड एक में पौधा है।

यह एक पुराना किला है.

एक रूम है जिसमें कुछ वस्तुऐ रखे हुए हैं.

पानी में आ नीले आकाश का रंग भी दिख रहा है और व्हाइट कलर का बादल भी दिख रहा है।

यह एक ऑफिस है.

और साइड में कुछ चादरे रखे हुए हैं और कुछ चादर काट रहे है.

इसमें एक सोफा लगे हुए हे काउंटर पे एक मशीन रखा हुआ हे.

और पंखा भी यहाँ लगाया गया है।

सामने में संगिनी क्रिंसन लिखा हुआ दिख रहा हैं.

उसके ग्राउंड में कुछ सिम अ सीमेंट का जमाया हुआ पत्थर जैसा है.

यह एक गाड़ी वाशिंग का जगह है।

उस दिवाली पर क्यू कीरुविट ल-लिखा हुआ हे.

यह एक खंडर का चित्र है.

उसके साइड में स्मॉल गेट है.

जहां नीचे स्टेट बैंक के ए_टी_एम के भी दरवाजा है बट बंद है शटर .

के डिजाइन लगाए हुऐ हे.

जो की एक बड़ा जैसा दिख रहा है।

टेंपो में कुछ यात्री बैठे हुए हैं. औ--

यह एक रेलगाड़ी है जो की माल ढोने का काम करता है.

डब्बा का ढक्कन भी खुला हुआ है और गाड़ी रुका हुआ है.

ड्रम जैसा जिसमें क्लीयरेंस लिखा हुआ--

आठ बजके पांच हावर्स आँठ चौदह बजके पांच हावर्स सोला बजके पांच हावर्स लिखा हुआ है.